सामने एक बैनर है जिसपर लिखा है स्टेट बैंक ए.टी.एम. ।

भूरा है यहाँ पर दरवाजे दरवाजों का रंग पीला और क्रीम है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है जिसका सफ़ेद रंग से जनरल स्टोर लिखा हुआ --

गहरा काला है बताइये रात का समय पीछे ऊचे पहाड़ हैं पहाड़ो के आस-पास पेड़ दिखाई दे रहें हैं जो हरे-भरे है।

जैसा कि में देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं पहाड़ो पर यहाँ पर।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है छठ एवं कार्तीक पूर्णिमा के इस अवसर पर --

जैसा की मैं देख पारी हूँ मुझे यहाँ पर बड़ा सा अ-अ मुर्गा दिखाई दे रहा है इसका रंग काला तथा इसकी बड़ी बड़ी --

ये एक नीले कलर की मेज़ पर कुछ बना रहे हैं यहाँ पर खिड़की लगी है खिड़की पे जाली है जाली का रंग --

यहाँ पर एक रिमोट रखा है जो लाल रंग का तथा इस पर तार भी लाग हुआ है।

यहाँ पर एक चौड़ा उप्पर पत्थर बना है ये सफ़ेद रंग का है दीवार का रंग भूरा।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके हाथ में साइकिल है किनारे-किनारे पर पेड़ लगे हैं पेड़ो का रंग हरा है।